खड़ा है और खेती में खेत में भी चुग रहा है हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं।

ये एक एकाडमी है जिसमें बच्चे--

और दूर बहोत ही पहाड़ दिख रहे हैं नाव सामने चल रही है।

खेत में मिट्टी है और घास लगी हुई है।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है दुकान में बहोत सारा सामान--

पोस्ट ऑफिस है बाहर बोर्ड लगा हुआ है पोस्ट ऑफिस का--

बहुत ही अच्छा यहां पे देखने को लग रहा है।

ये एक होटल का रूम है जिस पे बहुत ही ज्यादा समान रखा हुआ है सामने एल_सी_डी दिख रही है टेबल के ऊपर।